और यहाँ पे बीच में एक येलो कलर का बना हुआ है।

इसमें दिखाया जा रहा है कि ये कपड़े का शॉप है जिसमें मेंस वेयर है।

जिसमें से कि रेड ब्लू ऑरेंज सभी कलर के हैं ऊपर में ब्लैक कलर से कैंटेबल लिखा हुआ है।

यहां पे डेस्क बनाया गया है जो कि ब्राउन और वाइट कलर में है।

ऊपर का फ्लोर पे कारपोट से बनाया गया है जिसमें की पिंक ऑरेंज व्हाइट कलर का दिया गया है लाइटिंग व्हाइट कलर का लगा गया है।

और गेट पे भी इंडोर लिखा है ऑरेंज कलर का मिरर का गेट है।

उसके आगे लोहे का टेंट बना हुआ है और यहां पे छोटे छोटे घास है।

और इसके बगल में छोटे छोटे पेड़ भी है और बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं ।

टॉर्च रखे हुए हैं बल्ब रखे हुए हैं।

पीछे गैस रखा हुआ है ऊपर चूल्हा है कढ़ाई है दो तीन व्यक्ति खड़े हैं।

यहां चप्पल बहुत सारे हैं और एक व्यक्ति खड़ी हुई है अंदर मूर्ति दिख रहा है।

व्हाइट कलर का इसका ग्राउंड में भी नीचे सीमेंट रखा गया है।

इसके बगल में एक पर्दा है जो ब्लैक कलर का है यहां पे एक बेड है।

कार्पेट का रंग ब्लू कलर का है और यह पिंक कलर का है।

खिड़की पे उ ब्लैक कलर से लोहा लगाया गया है।

दिश में दिखाया गया है एक दुकान है जो कि पहनावा नाम से है।

एक रूम है जिसमें की व्हाइट कलर का कलर किया गया है बोर्ड दो बोर्ड है।

नीचे यहां पे के कपड़ा बिछाया गया है जो की पिंक कलर का है एक व्हाइट कलर का पेपर निकला हुआ है।

यह दृश्य में दिखया गया है कि दो गाड़ी है एक ब्लू कलर का एक पर्पल कलर है उसके नीचे एक पर्पल कलर का बॉर्डर बना हुआ --

इसमें दिखाया गया यह दो मंदिर दिख रहे हैं।

जोकि ग्रीन कलर से कवर किया लोहे से बना हुआ हैं।

बगल में रास्ते हैं बहुत से बाइक खड़े हैं पेड़ पौधे आसमान और बादल दिख रहे हैं।

यह दृश्य मे दिखाया जा रहा है कि एक मंजिला घर है।

पर लटकन लगे हुए हैं ऊपर से ये ऑरेंज कलर का स्किन कलर का मिक्स किया हुआ है उधर लाइटिंग लगे हुए हैं लोग जा रहे हैं।

बाइक और एक ब्लैक कलर है बाइक और एक स्कूटी है उसके आगे और एक स्कूटी है एक आदमी आता हुआ दिख रहा है।

और यहां दीवाल पे ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में दिया गया है रे--

इस दृश्य में दिखाया जा रहा है तीन व्यक्ति है।

यहां पे एक लैपटॉप है और एक डायरी रखा गया है।

दृश्य में दिखाया गया दो मंजिला और चार मंजिला मकान है।

दृश्य में दिखाया गया एक रूम है जोकि व्हाइट कलर से किया गया एक पर्दा है।

नीचे का फ्लोर व्हाइट कलर में है और लाइटिंग लगी--

यहां पे एक बड़ी बड़ी पिलर दिए हुए हैं और यहां पे वाइट कलर टाइल्स लगाया गया है और बहुत सारे कपड़े रखे हुए--

फिर इसमें दिखाई गए है तीन पर्दे हैं जो कि एक ऑरेंज कलर का है दो स्काई कलर का है।

नीचे दो कुर्सी रखी हुई है लोहे की है।